जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है यह एक स्टेट बैंक का ए_टी_एम है जिसके बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है एक ऑरेंज कलर की दिवार --

की दीवार है उसके ऊपर रेड कलर में हरिभाई चश्मे वाला लिखा हुआ है सामने थोड़ी मोटरसाइकिले खड़ी हुई है और कुछ आदमी भी खड़े हुए है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं रात का समय है यहां पर एक स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर बच्चे नाच रहे हैं दो लड़कियों ने--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक होटल की तस्वीर है जहां पर ब्राउन कलर की टेबल पर व्हाइट कलर की प्लेट में एक पत्ता रखा हुआ है उस --

ये ऊपर कटोरे में चटनी और बाजू में डोसा लगा हुआ है वहाँ पर दो ग्लासे भी रखी है और कई सारी कुर्सियाँ दिख रही हैं।

की दीवार है वाइट कलर का काउंटर है येल्लो ब्लू ग्रीन कलर के डब्बे दिख रहे है और कई सारी शर्टे भी दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक आर्ट और म्यूजिक क्लास चल रही है जहां पर बच्चे नाच रहे हैं एक लड़की ने मिक्की माउस की पैंट --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है यह एक चर्च है जिसकी सीलिंग व्हाइट है यहां पर बहुत सारे फैन है और बहुत सारे ट्यू--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है आसमान का रंग ब्लू कलर का है यह एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर हरी कलर की घास उगी हुई है ।

हुई है हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे है एक बड़ी सी दीवार नजर आ रही है जो कि ब्राउन कलर में है एक नारियल का झाड़ भी नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है यह एक लॉन है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है और उसके उ अंदर पिंक और वा --

और वाइट कलर की फूल भी दिख रही है एक ऑरेंज कलर की दीवार नजर आ रही है और आजू बाजू हरे भरे झाड़ नज़र आ रहे है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है यहां एक बड़ा कॉरिडोर है जहां पर ग्रीन कलर की शटरें बनी हुई है साइड में रेलिंग बनी --

ब्लैक कलर का बनियान पहना है ऑरेंज कलर की दीवार है यहां पर सीलिंग पर एक पंखा दिख रहा है और एक--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है यह एक बिल्डिंग है यहां पर कई सारे तरह के बैंक बने हुए है जिसमें एलो कलर में वन अप--

यहां सभी कंपनियों के मोटरसाइकेल का जेनुइन पार्ट मिलता है सभी प्रकार के मोटरसाइकेल रिपेयेरिंग होती है एक ट्रक भी खड़ा हुआ है और एक रिक्शा जा रहा--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ एक फैन की दुकान है जहाँ पर कई सारे रखे फैन नजर आ रहे हैं बड़े-छोटी फैन नजर आ रहे हैं जो की ब्लैक --

है वाइट कलर की हरे-भरे झाड़ हैं एक घर दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर पर है और ब्लैक कलर की सिंटेक्स टंकी दिख रही है।

जैसा की मैं देख पा रही हूं दिन का समय है आसमान का रंग वाइट कलर का नजर आ रहा है एक ब्लू कलर का गेट नजर आ रहा है।

और दिवार नजर आ रही है उस पर वाइट कलर का कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है और हरे भरे झाड़ नजर आ रहे है।

एक बैग नजर आ रही है एक वाइट कलर और ब्लैक कलर का हेलमेट नजर आ रहा है एक ब्लू कलर की शर्ट नजर आ रही है एक ब्लू कलर का डस्टबिन नजर आ रहा --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

एक यह भी बड़ा सा आर्ट बनाया गया हुआ है ग्रींन कलर की मैटिंग की गयी है और पीले रंग की फूल दिख रही है और घर पर भी लाइटें दिख रही है।

सूट पेहना है और उसने चश्मा पेहना है औरत ने साड़ी पहनी है पीछे नमस्कार करते हुए एक पतला भी खड़ा है पिंक कलर के पर्दे हैं।

और वहाँ पर बहुत सारे कलर कलर के रिंग्स दिख रहे हैं पीछे कहीं सारे झाड़ हैं जो की हरे-भरे है और बड़ी सी वाकिंग पार्क दिख रही है।

वो डांस कर रही है उसके बाल काले कलर के हैं वो स्टेज के ऊपर नाच रही है और वहाँ पर कुछ फरफरियाँ भी पड़ी हुई हैं।